इस इमेज में एक सड़क दिखाई दे रही है यहाँ पे एक दुकान दिखाई दे रही है दुकानो पे जाने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं।

चम्मच भी रखी दिखाई दे रहा बर्तनो को ढक के रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक हाथी दिखाई दे रही है जिसके सूढ़ में से पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ बच्चे उसके ऊपर बैठे हुए भी दिखाई दे रहे है कुछ उसको टच करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं ।

इस इमेज में एक बड़ा -सा मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में छोटॆ घास लगा हुआ दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में एक गाड़ी दिखाई दे रही है जिसपे डीजे के बॉक्स रखे हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में एक टेबल दिखाई दे रहा है टेबल पे कुछ प्लैट्स रखी हुई दिखाई दे रही है पानी का गिलास रखा हुआ दिखाई दे रहा है प्लेट में कुछ चावल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं ।

उससे कुछ बात करते हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे खिड़की पे पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे एक रुमाल भी दिखाई दे रहा हैं ।